यह एक चर्च की फोटो है।

यह एक मंदिर की फोटो है।

ये एक ही प्रकार के पौधे हैं जो अभी बहोत ही छोटे हैं जिनके पत्ते अच्छे उग गए हैं।

सामने बहोत सारे ट्रैक्टर लगे हुए हैं।

एक शीशे का गेट भी दिखाई दे रहा है।

यह एक कमरे की फोटो है सामने पलंग लगा हुआ है।

जो ब्ल्यू रंग का गुलाबी रंग का--